बटन लगी नजर आ रही है वहीं साईड में कुछ स्टार्टर भी नजर आ रहें हैं पीछे की तरफ दीवाल पर लगी हुई इट भी नजर आ--